इस इमेज में मुझे ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में एक कार रखी हुई दिखाई दे रही एक दो तीन लैंप दिखाई दे रहे है जाली सी बनी दिखाई दे रही है।

यह मुझे गेट दिखाई दे रहा है उसपे वाटिका नगर परिषद नागौर लिखा हुआ है ब्लैक कलर का गेट है अंदर बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है और दिखाई दे रही है गेट पर लाल लाल सी --

इमेज मे मुझे एक गेट दिखाई दे रहा उसपे लिखा हुआ पी पेंच टायगर रिज़र्व अह के_एच_यू_वी_ए_एल_ए --

और उसके बाउंड्री के बाद मोटरसाइकिले रखी है ब्लैक कलर की एक आदमी मोटरसाइकिल के बाजू में खड़ा हुआ है जिसने नीली सी टी शर्ट पहनी हुई है उसमें कुछ लिखा हुआ है वाइट कलर का और पैंट पहनी हुई है जूते पहने हुए है और--

इस इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है उसके बाहर लिखा हुआ है ए जे ए एन टी ए अजंता डी ए डबल आर वाय डेअरी ।